जो कुछ है और उसमें ताले लगे हुए हैं दो ताले लगे हुए हैं और लकड़ी पेंट है इसपे और वाइट कलर है और अन्दर से कुछ चीज़ें रखी हुई सिर्फ वाइट कलर है।

मे एक लंबा-सा ग्राउंड सा है फिर आगे चल के एक सीमेंट सी कलर का एक घर बना हुआ है।

वहां पर एक मैन गेट लगा हुआ हैं और यहां पर बहुत सारी छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं फिर बड़े-बड़े भी पेड़ लगे हुए हैं आसमान दिख रहा हैं और लाइटें भी लगी हुई हैं रोड मे रोड पे --